रोड हाव धरती हाव चक्का हाव लाइट हाव मोटरसाइकिल हाव आदमी हाव पेड़ हाव।

रोड हाव गाछ हाव पानी हाव जहाज हाव घर हाव सीढ़ी हाव।

पहाड़ होव जहाज होव जहाज में आदमीन होव तीर लटकल होव।

हरदिना फूल हव हरा गाछ हव गेंदा फूल हव लाल फूल हव पीला हाव।

पारक हाव ई हो ट्रांसफॉमर हाव घास हाव ।